इस फोटो में दिखाई दे रहा है कि एक रूम है रूम में बहोत तरह की चीजें तो पड़ी है लेकिन--

और ऊपर का डिजाइन भी बहोत ही मस्त है और आस पास हरियाली है बहोत बड़े बड़े पेड़ हैं।

आस पास में पेड़ है बड़े बड़े और इधर के साइड में दो चार आदमी खड़े है।

और पीछे बहोत सारे आदमी खड़े हैं और इधर झुंड में औरतें बैठी है इधर ये मोटरसाइकिल दिख रही पीछे से--